ये कैंड्रिल मशीन लगी हुई है जहां पर लोग दौड़ते हैं।

और खूबसूरत बनाने के लिए इसपे डेंट कराया गया है।

लाल कलर की कुर्सियां व मेजे पड़ी हुई हैं।

और इसकी टाइल्स बहोत ज्यादा चमक रहे है।

यह एक बिल्डिंग है जो की बहोत बड़ी है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पे--

यहां पर बहुत सारी लाइटे लगी है।

चारों तरफ क्यारियां बनी हुई हैं।

सभी लोग टोपी लगाए हुए है कुछ लोग झुके है और कुछ लोग बैठे हुए है।

इस फोटो में सामने एक कार का शोरूम नजर आ रहा है।

यह एक कपड़े साफ सफाई के वस्तुओं की दुकान है।

गेट के ऊपर एक फोटो लगी हुई है जिस पर एक जेंट्स और एक लेडिस बनी हुई--

बोर्ड के नीचे डॉक्टर्स का नाम लिखा है संजीवनी हेल्थ केयर ।

यहां एक न्यू कपल्स की फोटो है।

बाकी सभी लोग उसकी सेवा करने के लिए पैदल नीचे चल रहे हैं।

एक व्यक्ति सामने से हाथ में कुछ लिए हुए आ रहा है।

यह एक बहती नदी के पुल की तस्वीर है।

नदी के किनारे किनारे हरे हरे पेड़ पौधे घास लगी हुई है।

सामने लकड़ी का एक छोटा सा घर बना हुआ रखा है।

यह एक रॉयल बुक डिपो है जहां पर बहुत सारी किताबें और एक सेंटा क्ला रखा हुआ है।

वॉल में डेकोरेशन के लिए फूल पट्टीदार झालर लगाई गई है।

पुल के साइड में लगी हुई रेलिंग फोटो में दिखाई दे रही है।

एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जिसके पीछे चार छल्ले बने हुए हैं।

एक साइड में काले कलर का एक कूलर रखा हुआ है।

यहां पर एक गोल गोल टेबल के चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हुई है।

ग़लियों के बीच बीच में छोटे छोटे पा पार्क बने हुए हैं जिसमें फुलवारी हरी हरी घास लगी हुई है।